पीछे टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रहे हैं म काले रंग के टाइल्स लगी हुए हैं बहुत से सारी मूर्तियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

बोहत सारी घर भी दिखाई दे रहे हैं। सभी में हरियाली उगती हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में ऑंगन दिखाई दे रहा है। छोटी-छोटे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

पंखे लगे हुई दिखाई दे रहे हैं। नीचे टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रहे हैं। सफ़ेद और नीले रंग की दीवाल दिखाई दे रही है।

कचरा पड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं। बहुत सा घना जंगल दिखाई दे रहा है।

उम्म दो लकड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में नदी दिखाई दे रही है कई सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पास में खेत भी दिखाई दे रहा है।

इसमें शटर लगी हुई दिखाई दे रही है कंप्यूटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

पास में एक शटर बंद दिखाई दे रही है सड़क भी दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।